पेड़ पौधे दिख रहे है। आसमान दिख रहा है।

ड्रम दिख रहा है। पेड़ पौधे दिख रहे हैं। पानी की टंकी दिख रही है।